टेबलें है और इनके ऊपर औरतें और आदमी बैठे हैं।

जो एक कुएं के अंदर पेट्रोल डाल रहा हैं।

और इस बोर्ड पे कुकू कैफे शॉप लिखा हुआ है।